और एक ए.टी.एम. नजर आ रहा है जो की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ए.टी.एम. है।

मुझे इस इमेज में एक मंदिर नजर आ रहा है। और उसके सामने एक सैलून हेयर सैलून नजर आ रही है।

और आस पास एक बाज़ार सा नजर आ रहा है जो की दिख रहा है फूल फल फ्रूट सब्जी वगेरह --

और इस इमेज में कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जो की इसके आस-पास भी नहीं है ।

जो की काँच का शो-केस नजर आता हुआ दिख रहा है।